--साथ ही ट्रे में दो चम्मच भी रखी हुई है।

यहाँ पर बहुत सारे आलू दिखाई दे रहे हैं | इनकी संख्या बहुत अधिक है साथ ही ये आलू का साइज़ भी काफी बड़ा है |

यहाँ बहुत सारी मछलियाँ दिखाई दे रही है जो किसी टेबल पर रखी हुई है।

इस तस्वीर मे बोहत सारे लोग दिख रहे है कुछ बाइक्स रखी हुई है जो की किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हुए है इधर पे कुछ लंबा सा खंभा खड़ा हुआ है।